इस तरह ग्लास अरेंज करने का मतलब एक ये है कि इस तरह एक गेम खेला जाता है ग्लास और बाल का।

यहां पे बहुत सारे पर्दे यह बल्ब भी हैं साथ में एक कांच भी है।